एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुकान है जो जिसके सामने दो ऑटो खड़े हुए हैं।

यहाँ पर बहुत सी भीड़े होती हैं दुकान से सामान लेने के लिए बहुत से लोग आते हैं दुकान बहोत बड़ी है दुकान के पास एक झंडा भी लगा हुआ है।

इस रास्ते पे अंदर से जाकर हम हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे।

खेत है इस खेत में बड़ी-बड़ी घास लगी हुई हैं यह खेती है दूर एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है और भी कई पेड़ लगे हुए हैं।

एक दुकान है ये दुकान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है दुकानों पर लाइटो से सजाया गया है।

बाहर जो टेबले रखी हुई है ये दुकान आगे पूरी कंचो से बनी हुई है इसके ऊपर ब्रू बेक्स कैफे लिखा हुआ है।

पेड़ पापलर के पेड़ लगे हुए हैं जोकि बहुत पतले और बहुत लम्बे हैं। यहाँ इधर स्टूल रखा --

यहाँ मिसाइलें है यहाँ पर मिसाइलें बनाई जाती है मिसाइलें बनाते है।